साइड में एक मैडम खड़ी जिन्होंने पीला कलर का सूट पहना है जोकि बोहत ही प्यारा लग रहा है। एक आदमी खड़ा है। पीछे सर जोकि चश्मा पहन के खड़ा हुआ है। बच्चो की वाटरबोटल दिख रही है। बैग दिख रही है। शूज दिख रहे है। मोज़े --

पीछे हमको दीवारे गुलाबी और सफ़ेद दिख रही है जो कि बहुत ही अच्छी लग रही एक गमला रखा हुआ है जो कि पर्पल कलर का दिख रहा है जिसमें पत्तियां है जो कि हरी कलर की दिख रही है जो कि बहुत ही प्यारी लग रही और बहुत ही सुंदर लग रही है।

जैसा की हम देख सकते है सामने हमको बोहत सुंदर नजारा दिख रहा है बोहत लेडिसे दिख रही है सामने हमको एक मल्टी दिख रही है मल्टी किसी चर्च लग रही है जो कि बोहत सुंदर लग रही है नीली कलर की ये मल्टी दिख रही है।

माथे पर तिलक लगाया हुआ है जो की हल्दी लगी हुई पीली कलर की उसके ऊपर लाल कलर का तिलक लगा हुआ है जो की गोल दिख रहा है जो की बोहत सुन्दर दिख रहा है पीछे हमको दीवारें दिख रही है जो की स्टेज --